इधर कुर्सी भी पड़ी हुई है मतलब इतना प्यारा है ना तुम देख सकते हो डिजाइन वगैरह भी।

और यह पे पारा कितना अच्छा है मतलब शाम को इतना अच्छा मन लगता है।

मतलब बहुत अच्छी है मतलब ये मशीन है रखी हुई है देखो कितनी वाइट वाली भी अच्छी लग रही है और ये --

जाल भी कितना अच्छा कितना हरा भरा है। मतलब कि बोहोत ही अच्छे लग रहे थे। कछुएं हमने छूये भी। बोहोत अच्छा था।

दम हमारे मतलब मेरे घर पे ही बनी हुई है। मेरे भाई ने बनाई थी लकड़ी की। बोहोत ही सुंदर है।